यहां पे सामने रोड बना हुआ है सामने एक मैन गेट जैसा बना हुआ है जिसमें ऊपर डिजाइन बनी हुई है।

इधर पीछे पेड़ भी लगे हुए हैं ऊपर से डोरी जैसी लटक रही है पीछे भी एक बिल्डिंग है उधर बादल है।

पतली छोटी रैलिंग बनी हुई है उस तरफ भी रोड दिखाई न दूर है एक मकान दिखाई दे रहा है।

ऊपर बादल दिखाई दे रहा है पीछे पहाड़ जैसे दिख रहे हैं।

तो ये लटक के नीचे की तरफ जा रही है भौत सारे तार लगे हुए दिखाई दे रहे।

और सामने पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है और इधर भी नीचे पर --

यहाँ पे पत्थर पर एक अंकल जी बैठे हुए हैं पीछे काफी सारा मैदान दिखाई दे रहा है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है।

पेड़ लगे हुए हैं पीछे के जैसा जिसमे कुछ लगा हुआ है।

इधर बाजू में एक अंकल जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं पीछे मकान बना हुआ है निचे शटरें लगीं हुईं हैं।

यहां पे सामने काफी सारी सीढ़ियां दिखाई दे रही है बाजू में हल्की छोटी सी रेलिंग बनी हुई है।

सामने काफी बड़ा मैदान डला हुआ है जिसमे छोटी-छोटी घास लगी हुई है।

ऊपर तार दिखाई दे रहा है ऊपर बादल भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर काफी बड़ा ग्राउंड डला हुआ है जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे है मैच ।

मकान जैसा बना हुआ है जिसमें ऊपर बालकनी बनी हुई है वहां पर कुछ खिड़की --

बाजू में एक ब-बाइक खड़ी हुई है सामने में काफी सारा मैदान है जो पक्का है।